आसपास गमले हैं गमलों में फूल लगे हैं सामने की तरफ एक व्यक्ति आ रहा अंदर बोह सारी सजावट की गयी --

यहा एक हवाई अड्डा है यहा पर ग्राउंड है ग्राउंड मे बिच मे एक सर्कल बना हुआ है तथा एक ध्वज पहराया गया --

लाइट लगाई गई है दीवार पर बहुत सारे आकृतियां बनाई गई है पूरा फ्रेम लगा है।

वह ऊपर की साइड मे दो नीचे तीन उससे नीचे चार उससे नीचे पाँच तथा सबसे नीचे छेह ग्लासेस रखे है ग्लासेस स्टील के है।

ये एक फिसलपट्टी है यहा खिसलपट्टी के सामने एक छोटी बैठी हुई है साइड मे सिडिया बनाई हुई है एक बगल से एक पाइप निकला हुआ है कुछ व्यक्ति पेड़ो के छाए बैठे हुए है।

काउंटर पर एक व्यक्ति तथा ख़ासी दूसरे व्यक्ति खड़ा है सामने की साइड तीन व्यक्ति खड़े है।

एक जिम है जहां जिम के अंदर बहुत सारी वर्कआउट और एक्सरसाइज करने की मशीन रखी हुई है एक रनिंग मशीन है जिसके ऊपर एक व्यक्ती रनिंग कर रहा है दीवार पर लाइटे ऐ_सी व एक वॉच लगी हुई है।